इस फोटो में मेरेको सामने ही दो तीन फूल लगे हुए दे रहे हैं।

उसके बाहर काफी सारी गाड़ियां खड़ी हैं और यहां पर दो कार भी खड़ी हुई है।

यह एक स्कूल का प्रोग्राम है जहां पर पतंजलि टेस्टी नमकीन ढाबा लिखा हुआ है।

इसका कलर थोड़ा ब्रा ब्लैक कलर का है।

पीछे जो आदमी खड़ा है वह नाव चलाने के लिए है और यह दो आदमी से बैठ के जाने के लिए खड़े हुए है।

नीचे हमें काफी सारे घर दिखाई दे रहा है जिनका कलर सेम ही सेम --

यहां पे कुछ छोटी छोटी साइकल्स है और पीछे एक छोटा घर बन--

इसके पीछे हर कुछ मक्का मदीना जैसे कुछ दिखाई दे रहा है।

यहां पर काफी सारे बैट काफी सारे बाल रखी हुई है।